बहोत सारी कार खड़ी हुई हैं।

पीछे एक बड़ा सा पुराना घर दिख रहा है।

उसमें शिवलिंग रखा हुआ है।

दीवाल में एक छोटा सा भूरे रंग का दरवाजा लगा हुआ है।

कुछ बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

एक तिरंगा लगा हुआ है।

गेंदे के फूल लगे हुए हैं।

काले गमले में छोटा हरा पेड़ लगा है।

ऊपर सफेद लाइटें लगी हुई हैं।

और ईंटों से घेराव किया गया है।